यह हमारे शहर के स्थिति को बहौत बड़ा समुद्र है जिसे हम एक समुद्र तटीय भी कह सक --

बाड़ा बना हुआ है। इसमें थोड़ा गड्ढा है और यह पूरा गड्ढा पानी से भरा हुआ है। इसमें बहुत से कछुए हैं और ये कछुए --

यह हमारे खेतों पर यह एक फसल की गई है और इस फसल को हम मक्का कहते हैं। जिसे हम --

से शाम पांच बजे तक खुला रहता है और यह इंडसलेंड बैंक बोहोत ही बढ़िया बैंक है जिसमे--